नमस्कार दोस्तों saving plots पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको यह ज्ञात होना चाहिए इंटरैक्टिव ढंग से प्लॉट कमांड का उपयोग कैसे करें
पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
pylab पैकेज आरंभ करें
minus 3 pi से 3 pi तक sine curve प्लॉट करें
पहले हम प्लॉट के लिए आवश्यक प्वाइंट्स की गणना करेंगे
ऐसा करने के लिए कंसोल में टाइप करें
variable x में संचित प्वाइंट्स के लिए एक sine curve प्लॉट करें
कंसोल में टाइप करें plotx comma sinx और एंटर दबाएं
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक बहुत बुनियादी sine plot बनाया है अब देखते हैं कि प्लॉट को सेव कैसे करें
प्लॉट को सेव करने के लिए हम savefig फंक्शन का उपयोग करेंगे
टाइप करें savefigsinepng और एंटर दबाएं
यह फाइल को present working directory में सेव करता है
फाइल के नाम में डॉट के बाद के अक्षर एक्सटेंशन है यह उस फॉर्मेट को निर्धारित करता है जिसमें आप फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं
वर्तमान कार्यरत डाइरेक्टरी को जांचने के लिए कंसोल में pwd टाइप करें और एंटर दबाएं
फ़ाइल को भिन्न डाइरेक्टरी में सेव करने के लिए फ़ाइल नाम से पहले डाइरेक्टरी का पूरा पाथ टाइप करें
ध्यान दें उपर्यक्त फाइल पाथ लिनक्स आधारित फाइल सिस्टम के लिए है
विंडोज के लिए यहाँ दिखाए गए अनुसार पूरा फाइल पाथ दें यहाँ विंडोज में fossee यूजरनेम है और sinepng फाइल को डेस्कटॉप पर सेव किया जाना है
यहाँ हमने extension dot png का उपयोग किया है यह सुनिश्चित करेगा कि इमेज png फाइल के रूप में सेव हो गई है
अब फाइल sinepng का पता लगाते हैं जिसे हमने पहले सेव किया
हमने फाइल सेव की थी
फाइल ब्राउजर का उपयोग करके slashhomeslashfossee में नेविगेट करें
प्लॉटेड sine curve को देखने के लिए sinepng फाइल खोलें
savefig प्लॉट को कई फॉर्मेट्स में सेव कर सकता है जैसे
eps encapsulated post script latex डॉक्यूमेंट्स के साथ उपयोगित होना चाहिए
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय हल करने की कोशिश करें और विडियो पुनः चलाएं
sine plot को eps format में सेव करें इस अध्याय के लिए आउटपुट देखें
टाइप करें savefigslash home slash fossee slash sineeps और एंटर दबाएं
अब slash home slash fossee पर जाएं और देखें नई फाइल बन गई है हम यहाँ फाइल sineeps देखते हैं
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय हल करने की कोशिश करें और पुनः विडियो चलाएं sine plot को pdf ps और svg formats में सेव करें
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
परिणाम में एक एरर देगा क्योंकि full path नहीं दिया गया
और उत्तर हैं
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें
कृपया पाइथन पर आपकी सामान्य क्वेरी को इस फोरम पर पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैअधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से में जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद